लुक आरी है और उपर हरा कलर का पेंट किया हुआ है सामने वाईट कलर की पेंट हुई है गुंबद जो है लाल कलर के हैं।

आपको सामने कुछ मूर्ति दिखाई दे रही हैं जैसे कि एक मू आपके हाथ में तबला हैं एक शहनाई बजा रहे हैं काले कलर की ये मुर्तिया हैं।

चित्र दिख रही हैं जैसा की फिल्म का पोस्टर भी दिख रहा है और एक बुक स्टाल है जहां पे कई प्रकार की हर प्रकार की बुकें आपको मिलती हैं जो कि काफी अच्छी --

और साइड में आपको तार दिख रहा है और सामने आपको पुष्ठ दिख रहा है होर्लेक्स दिख रहा है चिकन दिख रहा है।

अच्छा उशदेश्य हैं और यहाँ की दीवारे काफी मजबूत लग रही हैं।

जैसा की आप पिच पर देख पा रहे हैं हलकी-हलकी घासें हैं हरे कलर की और बाउंड्री रेखा है मुंबई इंडियंस लग रही है टीम जो मुंबई लेजेंड्स खेल रही है।

और सामने आपको भगवान की मूर्ति जो है वो चांदी के कलर की दिखाई दे रही है और आपको यह मंदिल में कई पोस्टर भी दिख रहे है जो बगल में लगाये हुए है।

ऊपर गुम्बज में भी चांदी लगी हुई है और देखने में जो की काफी अद्भुत नजारा लग रहा है।

यहाँ पे जैसा आप देख रहें हैं एक छत्त की डलिया हो रही है सारे मज़दूर खड़े हुए हैं एक मज़दूर पेंट में लत पट है नीचे सरिया है।

सामने आपको एक टोटो दिखाई दे रहा है जिसपे एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है सफ़ेद कलर का टी-शर्ट पहने निकर पहने और सामने आप --

नीचे एक कॅश हरे कलर का टाइल्स बिछा हुआ है बगल में कुछ चेयर रखी हुई है अंदर भी एक व्यक्ति --

सामने आपको एक झरना दिख रहा है नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और पत्थरों पे हरे हरे कलर के घास हैं।

सामने आपको एक लेडी दिख रही है जो की फोटो खींच रही है सामने आपको एक लड़का दिख रहा है दो-तीन लड़के और नहा रहे हैं।

और सामने कुछ मूर्तियां है जो कपड़े पहनकर बैठी हुईं है।